ईं तस्वीर पर हम देख ही सकदा की हमें ईं तस्वीर पर एक एक्टिविटी सेण्टर दिखेण लग्युं।

ईं तस्वीर पर हमें तालाब दिखेण लग्युं जखुन पाणी भर्युं ईं तालाब पर मत्थि बिटिन पाणी भरयण लग्युं तालाब का किनार हमें डाला दिखेण लग्यां।

ईं तस्वीर पर हम देख सक्दन की हम ते सामने एक जाला दिखण लग्युं इ जाला पर हम देखण लग्यां कि लिख्युं च जू रूल्स ।